और सारे आइटम्स डालकर सप्लाई होते हैं और ये रंग बिरंगे ऑटो बहोत आकर्षित करते हैं।

हिसाब से आठ से छै लोग बैठ सकते हैं आराम से और यह लाल रंग की है और इसके ऊपर मे पुर लिखा हुआ है ।

इस दृश्य में हमें अ डांसिंग रेन दिखाई देता है जो की अ रंग बिरंगे लाइटिंग से आ रहा है और यह शाम का समय है जो अ दूसरे तीसरे लाइटिंग वगैरह को आकर्षित करता है।

इसके पुल के आस पास छोटे-छोटे पौधे मौजूद हैं और खुला आसमान है और यहाँ ये आदमी उसे देखकर आनंद ले रहा है।

इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि यहां पर एक मस्जिद को बताया गया है जिसका मीनार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हुए और इसके नीचे बहुत ही सुंदरता से आकर्षित करता है उसका डिज़ाइन वगैरा।

इस दृश्य मे हमें ये मालूम पड़ता है की यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग मोजूद है और गेट के सामने पार्किंग के लिए कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है।

और उसके सामने आ कैंडल्स जला कर रखे गए हैं जो की बहोत ही खूबसूरत से दिख रहे हैं।